आदमी सब भी है एक लड़की पूछ रही है फोटो का।

स्टैचू है नीचे रोड पे एक लड़का बाइक पे सारा सामान ले के जा रहा है।